इ आई.टी.आई. कॉलेज सब प्रतीत होता हैं आई.टी.आई. कॉलेज का प्रैक्टिकल रूम --

कुर्सी टेबुल लगा मतलब खाने का अच्छा व्यवस्था है।

साथ में स्टेज भी है शादी विवाह का आमंत्रण या फिर किसी भी तरह का कोई पार्टी भी है।

अपने दूध को बेचता एक ग्वाला।

जो की ईसाई धर्म के लोगो के पूजा का आस्था है।

अपने भोजन की तलाश में दो बतखों का जोड़ा तालाब में अपने भोजन की तलाश में दो बतखों का जोड़ा।

एक काउन्टर ग्रामीण परिवेश ग्रामीण परिवेश शहरी लोगो का भी पसंदीता है।

कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम हैं ये।

प्रस्तुति वार्ड लग रहा हॉस्पिटल का प्रस्तुति वार्ड लग रहा है जनरल वार्ड लग रहा है |